एनो काफी बड़े रोड हैं और जो यहाँ पर रोड मैं कुछ लाइन वाइन बन रही हेगी सामने लोग हैं यह गाडी खड़ी हुई हेगी और बजी लोग हैं दो लोग हैं और कैमरा लिए हेंगी।

यहाँ पे बस खड़ी हुई है जिसका कलर ब्लू एंड वाइट हैं जिसके अंदर काफी सारे लोग बैठे हुए हैं और एक लोग चल रहा हैं।

यहाँ पर एक वॉचमैन भी खड़ा हुआ हैं ब्लू कलर की ड्रेस पहने हुए हैं जो और गन टांगे हुए हैं पीछे साइड मैं चैनल लगा हुआ हैं।

और नदी के ऊपर एक फूल बना हुआ है गा जहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है रेड शर्ट पहने हैं और नदी के आसपास काफी हरियाली--

यहाँ पर बस स्टैंड हैं यहाँ पर एक बस खड़ी हुई हैंजिसका कलर वाइट हैं और यहाँ पर काफी सारे लोग होंगे सर्दी का टाइम हैंयहाँ पे लोग जैकेट पहने हुए हेंगें।

दुकाने होंगी पोस्टर लगा हुआ हैं साइकिल होंगीउसमे कुछ डिब्बे रखे हैंगे मिरर लगा हैं और टायर रखे हुए हैबगल में और भी साइकिल्स हैंगी।

और लाइब्रेरी के सामने एक आदमी खड़ा हुआ है ग जो वाइट कलर की टी शर्ट पहने हुए--

जो होली खेली हैं इन लोगों ने तो इनके ऊपर सब होली का रंग लगा हुआ है सब गुलाबी रंग से सने हैं।

जो ब्लैक कलर का कुरता और वाईट कलर का पैजामा पहने हुए हैं गा और आस-पास काफी घर बने हुए हैं यहाँ--

ओ फूलों से सजाए गया हैगा और उसमे काफी सारे कर्टेन लगे हुए हैंगेअलग अलग कलर के कन्टेन लगे हुए हैं और फ्लोर पर--